चर्च है यह चर्च काफी बड़ा और अच्छा है इस चर्च में क्रिश्चन समाज के सारे लोग आए हुए है।